यह एक पर्यटन स्थल लग रहा है जहाँ पर एक बड़ा-सा --

काले रंग की कढ़ाई पर रखी हुई है।

ब्रिज है पिलर पे टिकी हुई है और एक नाव दिख रहा है।

गैरेज दुकान है जहाँ पर गाड़ी बनाने की सामग्रियां मिलती हैं।

बगल में एक दिवार है जिस पर प्लस्टर नहीं की गई है ईट दिख ईट दिखाई दे रही है।